एक नदी दे रहा है।

पीछे से हमे बड़ा बड़ा माउंटेन भी एक देख रहा है।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

साइड में ब्लू कलर का एक गाड़ी भी है।

साइड में टेबल के ऊपर कॉपी भी रख के है।

ये फोटो में व्यक्ति लोग मछली बेच के हैं।

एक ओर बाइसाइकील भी लगाया हुआ है।

दो बोट देख रहा है।

लेफ्ट साइड में एक नारियल का घास भी है।

एक इंसान नीचे में है फोन पकड़ के।

ये फोटो में एक बड़ा सा समुद्र देख रहा है।

नदी के बीच में बड़ा बड़ा पत्थर भी--

साइड में कपरा भी सुकाके है पत्थर के ऊपर में।

बीच में भी एक पोस है लगा के ऊपर में।

बस के पीछे में एक बड़ा सा घास भी है।